और इसमें कुछ बहोत सारे मिस्त्री भी हैं जो स्लिप तक डालने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ जाल को संभाल रहे हैं कुछ मिट्टी वित्ती संभाल रहे हैं कुछ पानी छिड़काव कर रहे हैं।

और और इसमें एक लाइट भी जलने से बलूंस भी लगे हैं रेड रेड और बहुत अच्छा डेकोरेशन बहुत सारी बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। इसमें एक साउंड भी बज रहा है। जिसमें डांस हो रहा है और बहुत लेडीज एंड लड़कियाँ बैठी हुई देख रही हैं।